इस चित्र मे हम देख सखते है की यहाँ पर अम्बेडकर जी की दलित के बारे मे जब भी उन्होंने बात की थी उनके मूर्त --

इस चित्र में हम देख सकते हैं की यहाँ पर हमे खाने का सामान नजर या रहा है जिसे के अ जो भी हम रोजाना सामान इस्तेमाल करते हैं ट्राइऐंगगल चिप्स है।

इस चित्र मे हम देख सकते है कि यहाँ पर बड़ा पानी का समुद्र नजर आ रहा है और यहाँ पर नाव बोट वगैरा मौजूद है।